यहा एक गार्डन है जहा कि पे बहुत सारे बच्चे बैठे है यहा पढ़ाई कर रहे है यहा पे एक अंकल जो की फोटो खींच रहा है यहा बड़े बड़े पेड़ पौधे भी है यहा साइड में एक खंबा भी है।

यहाँ एक साई बाबा का मंदिर है जो की बहुत ही बड़ा है और चौड़ा भी है यहाँ पे साई बाबा को कुर्सी पे बीठा रखा है।